यह एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे फूल फुले हुए हैं।

सामने दो महिलाए कपड़ा पहने हुए खड़ी है।

इसमें बहुत सारे छोटी साइकिल हैं बहुत सारे बड़े साइकिल हैं।

पीछे तार का पेड़ है जिसमें हरे- हरे पत्ते हैं सामने और पौधे हैं जिसमें हरे- हरे पत्ते हैं।

एक व्यक्ति बैठे हुए हैं पीछे बहुत सारे बिल्डिंग हैं सामने अभी बिल्डिंग दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति सर पर गमछा बॉहां हुआ है पीछे केले का प पेड़ है।

कोई जगह है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

सामने दीवाल में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है सामने बहुत सारे घास दिख रहे हैं।

नीचे फर्श सफेद है।

यहां एक कोई दुकान है जिसमें फिफ्टी परसेंट ओफ लिखा हुआ है सामने टेन परसेंट ओफ ।

बहुत सारे किताब कॉपी दिख रहे हैं।

पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ऊपर बहोत सारे तार लगे हुए हैं।

सामने लाइ लाइटिंग लगी हुई है एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यह कोई खेल का मैदान है जिसमें हरे हरे घास लगे हुए हैं।

एक बिल्डिंग पे दो टंकी रखी हुयी है।

दो चार गुंबज रखे हुए हैं एक गेट लगा हुआ है।

ऊपर छता दिख रहा है सामने दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

यह एक ब्राइट करियर स्कूल है जिसकी स्थापना उन्नीस सौ तिरानवे में हुआ है।

नीचे बहुत सारी झाड़ियां है दीवार में बहुत सारे फोटो लगा हुआ है।

एक खिड़की है जो उसमें बाहर दिख रहा है।

यह कोई जगह है जिसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे है।

सामने एक बैनर दिख रहा है।

सामने तीन खंभे दिख रहे हैं ऊपर फाल्स सीलिंग किया हुआ है।

और बहुत सारे फूल के माले हैं।

यह एक दुकान है जिसका नाम चिल्ड्रन बुक्स है। जिसमें लिखा हुआ है अं सामान मिलता है ।

सामने एक पेड़ दिख रहा है साइड में एक शटर लगा हुआ है।

ऊपर पंखा चल रहा है सामने बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

सामने बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति का घड़ी दिख रहा है।

यह कोई जु है जिसमें बहुत सारे हिरन रखे हुए है जिसमें जाली लगी हुई है।